ये हमारे इधर की एक कपड़ो की दुकान है जिसमे समय-समय पर सेल लगती रहती है ये अब दीपावली का समय है ते ये लाइटों से सजी हुई है आप देख सकते है।

आप देख रहे हैं यहाँ पर पिंक एवं ब्लू कलर के मंदिर सजा हुआ है| इस मंदिर के पीछे एक बरगद का पेड़ लगा हुआ हैं एवं इसके मैदान में हरा-भरा लम्बे-लम्बे पेड़ लगे हुए है।

ये हमारे घर के सामने की एक बिल्डिंग है आप देख रहे हैं तीन मंजिल की यह बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के बगल में ही एक कपड़े की दुकान है।

ये हमारे घर के सामने एक मैदान है यहाँ पर सभी लोग आते हैं अपने नए-नए तरीके गेम को खेलने के लिए।

इसमें एक फ्रिज रखा है जिसमें ठंडाई के पानी ड्रिंक ये सभी इसमें रखी जाती है एवं यहाँ बहुत भीड़ लगी भी रहती है।